किसी गुफा की तस्वीर है पत्थर का आवरण है।

किसी बेग दुकान की तस्वीर है जिसमे शटर नजर आ रहा ऊपर लोहे से बना हुआ ग्रिल नजर आ रहा सिमेंट से बना हुआ दीवाल नजर आ रहा बिजली का मीटर नजर आ रहा।